यह किसी मंदिर के पास का बहुत सुन्दर और बहुत ही आकर्षित फोटो दिखाई दे रहा है।

इस पर्दे के गेट पर लिखा हुआ है गेट नम्बर चार।

बहुत अच्छा बहुत सुन्दर और बहुत ही ज्यादा बढ़िया फोटो दिखाई दे रहा है ।

और उसकी पूजा भी कर रहे है।

इअमे बहोत सारी टाइलसे लगी हुई है।

यहाँ पर इन्दिपेंदेंस डे बनाया जा रहा है।

जो बहत ही ज्यादा सुन्दर और बड़िया फोटो भी दिखाई दे रहा है।

इस व्यक्ति ने सफेद कलर कि शरड पेहन रखी हैं।

और यहाँ पर मोबाइल लगे हुए है चूतिया बनाता --

यह किसी बगलों के अंदर का--

बहोत ही सुंदर और बढ़िया फोटो दिखाई दे रहा है।

आज बहोत और अब शुबाह श्रिया फोटो दिखाई दे रहा हैं।

वाईट कलर के बहोत ही ज्यादा--

येह किसी पोर्ट के पास का --

बहोत ही ज्यादा बड़ा--

यहाँ किसी स्कूल के बाहर का बहोत ही सुंदर--

जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ फोटो खिंचवा रही है।

और क्या कहते हैं वो भी करवा रही है यहां पर सौरभ भी खड़ा हुआ--

खाने और पीने का सामान भी रखा हुआ--

आकर्षित और बहुत ही --

दिखाई दे रहा है और भी लिख--

यहाँ किसी स्पा के अंदर का बहुत ही--

वाइ भी दे रहा है यहाँ पर बोहत सारा खेलने का भी सामान मिलता है दल --

फोटो भी दिखाई दे रहा हैं।

जहां पर बहुत सारे कुशनस भी रखे हुए हैं।

और बहोत ही बढ़िया फोटो दिखाई दे रह हैं।

यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

क्युकी एक बाड़े को ही फोड़ रहे हैं--

और एक पिलर भी लगे हुए ह--

येह एक नदी के पास का--

इस पर से लोग भी बहुत आसानी से चढ़कर ही लिकल रहे रहते हैं।

बोहोत ही बढ़िया बोहोत ही सुन्दर और बोहोत ही अविश्ववनीय फोटो दिखाई दे रहा है।

बहोत ही अविश्वसनीय और बहोत ही आकर्षित --

बहोत ही अविश्वसनीय और--

यह एक के अंदर का बहुत ही बड़ा--

इस पर से लोग वाल्क करके भागने की स्पीड को भी बढ़ाते हैं और खूब मज़ा करते हैं।

यहाँ पर बहोत सारी कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

ये हैं फल सब्जी की भी दुकान देखी जा रही ह--

और बहुत सारी सब्जियां भी पड़ी हुई हैं।

बहोत ही बड़ा फोटो दिखाई दे रहा है जहां पर--

बहोत ही सुंदर बहोत ही बढ़िया --

किसी रेस्टोरेंट का आगे का फोटो दिखाई दे रहा है।